दिखाई दे रहा है और साथ ही ब्राउन कलर व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है कुछ--

इसका दरवाजा ओपन दिखाई दे रहा है और साइड में पानी भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है।

और कुछ लोग यहां पर बैठे हैं। स्टेज शो हो रहा--

और कुछ लाइटे भी व्हाइट येलो कलर की इसमें जल रही है व्हाइट और ब्राउन कलर की कुछ कुर्सियां भी है।

इसमें की ग्रोसरी का समान लगा हुआ है जो की वाइट कलर का है।

और ब्राउन कलर कलर की इसकी छत है यहां पर बहोत सारी लाइटे लगी हुई है और यह टाइल की शॉप की तरह दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें एक रोड दिखाई दे रही है सामने ही बिल्डिंगस् हैं।

और यहां पर हमे बहोत ही सारी मछलियां भी दिखाई दे रही हैं।

फ्रेम व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है रेड कलर का दीवार पर पेंट हुआ है इसमें--

इसमें केमिस्ट लिखा है इसमें प्लस का साइन दिखाई दे रहा--

इस फोटो में हमें बहुत सारी लाइटें दिख रही--

यहां पर वाइट कलर के पिलर्स भी खड़े हुए हैं।

अथवा यहां पर कुछ कांच भी दिखाई दे रहे--